मुझे एक बस डीपो दिखाई दे रहा है। वहाँ पे एक बस खड़ी दिखाई दे रही है। एक वाइट कलर की कार खड़ी हुए दिखाई दे रही है।

उसके नीचे एक और बोर्ड लगा है जिस पे हमम वी_डी_ओ आर पी एफ एस आई जी टी और एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ।

आ मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है यह दुकान किराने की समझ मे आ रही है जिसके ऊपर लक्ष्मी बेकर्स लिखा हुआ है बेकरी है। साइड में एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ चिप्स कुरकुरे के पैकेट लटके हुए दिखाई दे रहें हैं।

रोड के किनारे छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैंखाली रोड दिखाई दे रहे है।

सामने एक मोटरसाइकल दिखाई दे रही है ऊपर एक बिना वाला घर दिख रहा है सामने एक दुकान दिखाई दे रही है ।

मुझे एक दुकान दिख रही है जो बेकरी लग रही है साइड में कोकोकला लिखा है और कुछ लोग पेकेट चिप्स।

एक घर दिखाई दे रहा है। बस स्टैंड दिखाई दे रहा है| बस स्टैंड पर एक आदमी सोता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ दुरी पर एक पंखा दिखाई दे रहा है। ऊपर एक नली दिखाई दे रही है।